ये अभी के पेट्रोले पंप है बहुत सुन्दर लगता है देखने में गाड़ी ताड़ी बहुत है यहाँ पर।

अ ट्रक उरक है पेड़ पे गाछ है बिहार बहुत हरा-भरा है देखने में बहुत अच्छा है सुन्दर लगता है देखने में।